अभी भी लोग खाना खा सकते हैं रात का समय है लाइट्स जली हुई हैं।

डोज में कुछ योगा की पोस्चर की स्टेचूज रखी हुई है आगे में एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ है और सीलिंग में लाइट्स जल रही है।

हजारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं उसके पीछे में एक--